यह एक पार्क की फोटो है यहां पे एक घर बना हुआ है।

एक पंखे की टहली भी लगी हुई है पास में एक स्पीकर भी लगा हुआ है जिसे आरती भी सारे सबको सुनाई दे ऊपर एक --

जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है पास में एक साथिया भी बना हुआ है आसमानी कलर की दीवार है और एक ट्यूबलाइट भी जगी हुई है बाहर --

चडडीया भी मिलती है पापा मैने वाली और यहां पे बहोत सारी चीजे भी है जो छोटे बच्चों के पाउडर क्रीम --

एक लड़का है जो बाइक से उतर रहा है जिसने रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जींस पहन रखी है यहां तीन चार गाड़ियां और भी है।

यहां पे हर चेयर बनी हुए है यहां पे जेंट्स और लेडिस बैठी हुई है और रेड कलर का --

और यहां पे सोनार की दुकान है जिस पे सोने के नंबर लिखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी मेज रखी हुई है चेयर रखी हुई है और यहां पर नीचे गुलदस्ता गुलाब का भी रखा हुआ है।

जिसने अलमारी के अंदर बहोत से सम्मान रख रखे हैं और डिजाइनिंग बना रखी है आसपास--

ये पेंटिंग इस तरीके से बनी हुई है जैसे कि लग रहा है यह अभी बाहर निकल के आएगा सर्कल --